भी रखी हुई है और ए_सी या भी लगी हुई --

दो लोग खड़े हुए भी है।

मकान के बाहर पेड़ भी हैं।

बी बना हुआ है पारीक के बाहर एक फोर व्हीलर खड़ी है।

के अंदर बहुत सारे लोग--

यहां पर एक पारीक दिखाई दे रहा है।

पारीख के अंदर बहुत सारे लोग आराम --

एक लेडिज के सामने ब्लैक कलर का बैग --